आ सफेद और काले कलर का--

सामने हमको बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड पे प्लग लगा हुआ है।

ये पर्दा लगा हुआ है कत्थे कलर का--

लड़के और अगल बगल हमको बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

हमे यहाँ पर ऊ दो पत्थर के चट्टान दिख रहे है बी--

और नदी में पानी भी है और हमको सफेद कलर के बादल और धुंधले कलर के दिख रहे है।

इनमे छोटा-छोटा घास उगे हुए है और बहोत सारे लड़के खड़े हुए है।

और हमको यहाँ पे गोला-गोला आकार में नक्शा बना हुआ दिख रहा हैं। सामने बोर्ड दिख रहा है।

हमे यहाँ पर पेट्रोल पंप दिख रही है स्कूटी दिख रहा है।

अ जिसमे से दो खम्बे खड़े हुए है।

और खम्बे में तार लगा हुआ है। बगल में लाल कलर का कार भी है।

सामने हमको टीन का बना हुआ अ दिख रहा है हॉल --

जो की अ हरे कलर के और सफ़ेद कलर के पुते हुए है--

यहाँ पे ओं गोला आकर में ओंह बना हुआ दिख रहा है जिस--

संतरा कलर के फूल का गेट लगा हुआ है।

इसमें बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे गुब्बारे लगे है बहुत सारे कलरफुल --

और के.डी.एम लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सामने हमको पेड़-पौधे भी दिख रहे है।

और यहाँ पे बेड रखा हुआ है। बेडशीट बिछा हुआ है।

हमे यहाँ पर रोड दिख रहा है कत्थे कलर की और सफ़ेद कलर की--

और बहुत सारे खम्बे लगे हुए है और चैनल गेट भी सामने लगा हुआ है।

ये मुझे बहोत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है। ग्राउंड में बहोत सारे लोग है।

हमे यहाँ पे हॉल दिख रहा है। हॉल में काले कलर का अलमारी र--

और बस खड़ी हुई है लाल कलर की और--